जिसे कुछ बॉइज बना रहे हैं। म-एक व्यक्ति न अ-ब्लैक और व्हाइट कलर की लाईनिंग वाली शर्ट पहने है एक व्हाईट कलर की पहने है ब्लू कलर कि एक येलो की पहने हुए हैं।

इनके ऊपर कबूतर बैठे दिखाई दे रहे है अ व् बदक बैठी दिखाई दे रही है सफ़ेद कलर की है उनकी रेड चोच दिखाई यलो कलर दिख रही है कुछ बच्चे खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँं नदी टाइप दिख रही है। नदी के अन्दर कुछ उड़ने वाले परिंदे बैठे हुए बतक टाइप दिखाई दे रही हैं।

ऊपर में फुल दिखाई दे रहे हैं जोकि गेंदे के हैं और अगरबत्तीया जल रही हैं कुछ मजदुर हाथ बंधे खड़े हुए हैं। सामने में गेंदे की मालाए लटक रही --